यह एक विनायक नॆत्रालय है आई हॉस्पिटल यहाँ पे दोनों ओर शटर लगी हुई है बहुत बड़ी --

ब्लैक कलर का कीबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे कुछ और बॉक्स रखा हुआ है एक पिंक कलर का बैग भी रखा है।

खम्बे से पाल को बांधा गया है।

इसकी कई साखाये निचे लटकी हुई दिख रही है।

यहाँ एक ऑटो खड़ी है यहाँ पे ऑटो के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

यहाँ ब्लैक कलर की ऐल_इ_डी दिख रही है ऐल_इ_डी के नीचे भी कुछ बलून है यहाँ ग्रीन और ब्लैक की चेयर है।

इनके बिच में एक स्टूल लगा हुआ है। यहाँ पे एक बेंच है बेंच के ऊपर एक बोतल दिख रही है।

लोहै की सलाके लगी हुई है यहाँ बहुत सारी ईट रखी हुई है।

रिबिन भी लगी हुई हैं माँ की साड़ी --

सामने सीढ़ियां दिख रही है बस ब्लू कलर की दिख रही है।

पीछे ट्यूबलाइट लगा हुआ है कुछ लोग फोटो खिचते हुए नज़र आ रहै है।

यहाँ छो थोड़ा पानी भी दिख रहा है येलो कलर की बिल्डिंग बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा पाइप भी दिख रहा है।